होती है वैसे लोगों को सामूहिक विवाह का आयोजन स्थल यह अपने आप को सिद्ध करता --

मनोरंजन के लिए एक जगह एकत्रित होकर जीवन में आनंद खुशियाँ प्राप्त करते हैं।